यहां एक अच्छी सी जगह है और यहां घर दिख रहे है।

इसमें दांत च चेक करने वाली चेयर है।